पन्नी है जो पीले कलर की दिख रही है तरह की दिखाई दे रही है उसकी दिवार जो मेहंदी कलर की दिख रही है उसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।